जिसपे बनारस हैण्डीक्राफ्ट कारपोरेशन लिखा हुआ है।

और सीसे का एन्ट्रन्स है।

और हर बॉक्स में पॉट्स रखे हुए हैं जो कि काफी एंटीक हैं।